मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज हम एक बार फिर मन की बात के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं
दो दिन बाद दिसम्बर का महीना भी शुरू हो रहा है और दिसम्बर आते ही साइकोलॉजिकली हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए भई साल पूरा हो गया
ये साल का आखिरी महीना है और नए साल के लिए तानेबाने बुनना शुरू कर देते हैं
इसी महीने नेवी डे और आर्मेड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है
हम सबको मालूम है 16 दिसम्बर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयन्ती वर्ष भी देश मना रहा है
मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूँ हमारे वीरों का स्मरण करता हूँ
और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूँ
हमेशा की तरह इस बार भी मुझे NamoApp पर माइगोव पर आप सबके ढ़ेर सारे सुझाव भी मिले हैं
आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुखदुख भी साझा किये हैं
इसमें बहुत सारे नौजवान भी हैं छात्रछात्राएँ हैं
मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारत्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएँ उन्हें खूब पसंद आ रही हैं
वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं
साथियो अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है और अब तो देशभर में आम लोग हों या सरकारें पंचायत से लेकर पार्लामेंट तक अमृत महोत्सव की गूँज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है
ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ
आजादी की कहानीबच्चों की जुबानी कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया
खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल मौरिशस तंजानिया न्यूजीलैंड और फीजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए
हमारे देश का महारत्न ओंजीसी
ओंजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है
ओंजीसी इन दिनों ओइल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है
इन टूर्स में युवाओं को ओंजीसी के ओइल फील्ड आपरेशंस की जानकारी दी जा रही है उद्धेश्य ये कि हमारे उभरते इंजीनियर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में पूरे जोश और जुनून के साथ हाथ बंटा सकें
साथियो आजादी में अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है
देश के अलगअलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए
अंडमाननिकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे ऐसे जनजातीय समुदायों के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया
एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में ऊना के मिनिएचर राइटर राम कुमार जोशी जी ने भी किया है उन्होनें पोस्टेज स्टैम्प्स पर ही यानी इतने छोटे पोस्टेज स्टैंप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनोखे स्केच बनाए हैं
हिन्दी में लिखे राम शब्द पर उन्होनें स्केच तैयार किए जिसमें संक्षेप में दोनों महापुरुषों की जीवनी को भी उकेरा गया है
मध्य प्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तानगोई कार्यक्रम की जानकारी दी है
इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बलिदान की यादें ताजा की गई हैं
ऐसा ही एक कार्यक्रम काशी में हुआ
गोस्वामी तुलसीदास संत कबीर संत रैदास भारतेन्दु हरिश्चंद्र मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसी महान विभूतियों के सम्मान में तीन दिनों के महोत्सव का आयोजन किया गया
अलगअलग कालखंड में इन सभी की देश की जनजागृति में बहुत बड़ी भूमिका रही है
आपको ध्यान होगा मन की बात के पिछले एपिसोड्स के दौरान मैंने तीन प्रतियोगिताओं का उल्लेख किया था कॉम्पिटिशन की बात कही थी एक देशभक्ति के गीत लिखना देश भक्ति से जुड़ी आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए
मुझे आशा है कि इन प्रतियोगिताओं के लिए भी आप जरुर एंट्री भी भेज चुके होंगे योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे
मुझे आशा है बढ़चढ़कर के हिन्दुस्तान के हर कोने में इस कार्यक्रम को आप जरुर आगे बढ़ायेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो इस चर्चा से अब मैं आपको सीधे वृन्दावन लेकर चलता हूँ
वृन्दावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है
हमारे संतों ने भी कहा है
यह आसा धरि चित्त में यह आसा धरि चित्त में
कहत जथा मति मोर
वृंदावन सुख रंग कौ वृंदावन सुख रंग कौ
काहु न पायौ और
यानि वृंदावन की महिमा हम सब अपनेअपने सामर्थ्य के हिसाब से कहते जरूर हैं लेकिन वृंदावन का जो सुख है यहाँ का जो रस है उसका अंत कोई नहीं पा सकता वो तो असीम है
तभी तो वृंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है
इसकी छाप आपको दुनिया के कोनेकोने में मिल जाएगी
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ
क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगत से भलीभांति परिचित होंगे क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं
पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलरी इस नाम से एक आर्ट गैलरी भी है
यह गैलरी स्वान वैली के एक खूबसूरत क्षेत्र में बनाई गई है और ये ऑस्ट्रेलिया की एक निवासी जगत तारिणी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है
जगत तारिणी जी वैसे तो हैं ऑस्ट्रेलिया की जन्म भी वहीं हुआ लालनपालन भी वहीँ हुआ लेकिन 13 साल से भी अधिक समय वृन्दावन में आकर के उन्होंने बिताया
उनका कहना है कि वे ऑस्ट्रेलिया लौट तो गई अपने देश वापिस तो गयी लेकिन वो कभी भी वृन्दावन को भूल नहीं पाईं
इसलिए उन्होने वृंदावन और उसका आध्यात्मिक भाव से जुडने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही वृन्दावन खड़ा कर दिया
अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अद्भुत वृन्दावन उन्होंने बना लिया
यहाँ आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलता है
उन्हें भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थस्थलों वृंदावन नवाद्वीप और जगन्नाथपुरी की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है
यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं
एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है जिसके नीचे वृंदावन के लोग आश्रय लिए हुए हैं
जगत तारिणी जी का यह अद्भुत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का दर्शन कराता है
मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुतबहुत शुभकामनाएँ देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बने वृन्दावन के विषय में बात कर रहा था
ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झाँसी से भी है
दरअसल झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग जॉन Lang
जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे
भारत में रहकर उन्होने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था
हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में झाँसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं
यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएँ भी हुईं और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिये हैं
साथियो वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूरी नहीं होता
वीरता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं
मुझे ऐसी ही वीरता के बारे में श्रीमती ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर बताया है
जालौन में एक पारंपरिक नदी थी नून नदी
नून यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्त्रोत हुआ करती थी लेकिन धीरेधीरे नून नदी लुप्त होने की कगार पर पहुँच गई जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी इससे किसानों के लिए सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया था
जालौन के लोगों ने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया
इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई
हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग स्वतः स्फूर्त इस अभियान से जुड़े
यहाँ की पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई है
कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है
युद्ध के मैदान से अलग वीरता का ये उदाहरण हमारे देशवासियों की संकल्प शक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है और तब ही तो मैं कहता हूँ सबका प्रयास
मेरे प्यारे देशवासियो जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है
इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है
ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का
हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार ज़मीन के डूबने का खतरा रहता है
तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आईएसएलएंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था
यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिये ही खोजा
ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं
ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते है और जमीन को सुरक्षा देते हैं
इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है
साथियो प्रकृति से हमारे लिये खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं
प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नएनए रंग भी भरती है
अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब विरल हो रही है
पहली ही नज़र ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है
आपमें से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ओनलाइन जरुर देखा होगा
हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते है तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है
नदी का पानी इतना साफ़ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है
हमारे देश में अनेक राज्य हैं अनेक क्षेत्र है जहाँ के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को सँजोकर रखा है
इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवनशैली आज भी जीवित रखी है
ये हम सबके लिए भी प्रेरणा है
हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है हम उन्हें बचाएं उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएँ
इसी में हम सबका हित है जग का हित है
मेरे प्यारे देशवासियो सरकार जब योजनाएँ बनाती है बजट खर्च करती है समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है
लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है
सरकार के प्रयासों से सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं
यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुँचाने की प्रेरणा भी देता है
एक प्रकार से यह स्वान्त सुखाय ही तो है और इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ दो ऐसे ही साथी भी जुड़ रहे हैं जो अपने हौसलों से एक नया जीवन जीतकर आए हैं
इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की मदद से अपना इलाज कराया और एक नयी जिंदगी की शुरुआत की है
हमारे पहले साथी हैं राजेश कुमार प्रजापति जिन्हें ह्रदय रोग की बीमारी हर्ट की समस्या थी
तो आइये राजेश जी से बात करते हैं
राजेश जी नमस्ते
नमस्ते सिर नमस्ते
आपकी राजेश जी बीमारी क्या थी फिर
किसी डॉक्टर के पास गए होंगे मुझे जरा समझाइए स्थानीय डॉक्टर ने कहा होगा फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगें फिर आप निर्णय नहीं करते होंगे या करते होंगे क्याक्या होता था
जी मुझे हर्ट में प्रोब्लेम सिर आ गई थी मेरे
सीने में जलन होती थी सिर फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने पहले तो बताया हो सकता है बेटा तुम्हारे एसिड होगी तो मैंने काफी दिन एसिड की दवाई कराई उससे जब मुझे फायदा नहीं हुआ फिर डॉक्टर कपूर को दिखाया तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो लक्षण हैं उससे एंजियोग्राफी से पता चलेगा फिर उन्होंने रेफर किया मुझे श्री राम मूर्ति में
फिर मिले हम अमरेश अग्रवाल जी से तो उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी
फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये तो तुम्हारी नस ब्लॉकेज है तो हमने कहा सिर इसमें कितना खर्चा आयेगा तो उन्होंने कहा कार्ड है आयुष्मान वाला जो पीएम जी ने बना के दिया
तो हमने कहा सिर हमारे पास है
तो उन्होंने मेरा वो कार्ड लिया और मेरा सारा इलाज़ उसी कार्ड से हुआ है
सर और जो आपने ये बनाया है कार्ड ये बहुत ही अच्छी तरीक़े से और हम गरीब आदमियों के लिए बहुत सहूलियत है इससे
और आपका कैसे मैं धन्यवाद करूँ
आप करते क्या हैं राजेश जी
सर मैं इस समय तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ
और आयु कितनी है आपकी
मेरी उनचास साल है
इतनी छोटी आयु में आप को हर्ट का ट्रबल हो गया
हाँ जी सिर क्या बताये अब
आपके परिवार में भी पिताजी को या किसी माता जी को या इस प्रकार का पहले रहा है क्या
नहीं सिर किसी को नहीं था सिर ये पहला हमारे साथ ही हुआ है
ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार यह कार्ड देती है गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है तो ये आप को पता कैसे चला
सिर ये तो इतनी बड़ी योजना है गरीब आदमी बहुत इस से बेनेफिट मिलता है और इतना खुश हैं सिर हमने तो हॉस्पिटल में देखा है कि इस कार्ड से कितना लोगों को सहूलियत मिलती है जब डॉक्टर से कहता है कार्ड मेरे पास है सिर तो डॉक्टर कहता है ठीक वो कार्ड लेकर आईये मैं उसी कार्ड से आप का इलाज़ कर दूँगा
अच्छा कार्ड ना होता तो आप को कितना खर्चा बोला था डॉक्टर ने
डॉक्टर साहब ने कहा था बेटा इसमें बहुत सारा खर्चा आयेगा
बेटा अगर कार्ड नहीं होगा
तो मैंने कहा सिर कार्ड तो है मेरे पास तो उन्होंने कहा तुरंत आप दिखाइए तो हमने तुरंत दिखाया उसी कार्ड से सारा इलाज़ मेरा किया गया मेरे एक पैसा नहीं खर्च हुआ सारी दवाइयां भी उसी कार्ड से निकाली गई हैं
तो राजेश जी आप को अभी संतोष है तबीयत ठीक है
जी सिर आप का बहुतबहुत धन्यवाद सिर आप की उम्र भी इतनी लम्बी हो की हमेशा सत्ता में ही रहे और हमारे परिवार के लोग भी आप से इतना खुश हैं क्या कहें आप से
राजेश जी आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामनाएं मत दीजिए मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ
मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ मेरे लिए ये पद ये प्रधानमंत्री सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई सेवा के लिए है
राजेश प्रजापति सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को और क्या
देखिये ग़रीबों के लिए यह आयुष्मान भारत योजना यह अपने आप में
राजेश प्रजापति जी सिर बहुत बढ़िया चीज़ है
लेकिन देखिये राजेश जी आप हमारा एक काम कीजिये करेंगे
राजेश प्रजापति जी बिल्कुल करेंगे सिर
देखिये होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है आप एक जिम्मेवारी निभायिये ऐसे जितने गरीब परिवार है आपके आसपास उनको अपनी ये कैसे आपको लाभ हुआ कैसे मदद मिली ये बताइए
राजेश प्रजापति बिल्कुल बतायेंगे सिर
और उनको कहिये कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा लें ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाये और आज ग़रीब दवाई के कारण परेशान रहे यह तो ठीक नहीं है
अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करें तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है और गरीब को तो क्या होता है जैसे आपको ये हर्ट का प्रोब्लेम हुआ तो कितने महीने तक आप काम ही नहीं कर पाएं होंगे
राजेश प्रजापति हम तो दस कदम नहीं चल पातें थे जीना नहीं चढ़ पाते थे सिर
बस तो आप आप राजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने ग़रीबों को आप ये आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते है देखिये आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत ख़ुशी होगी कि चलिए एक राजेश जी की तबीयत तो ठीक हुई लेकिन राजेश जी ने सैकड़ों लोगों की तबीयत ठीक करवा दी ये आयुष्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है मध्यम वर्ग के लिए है सामान्य परिवारों के लिए है तो घरघर इस बात को पहुचाएंगे आप
राजेश प्रजापति बिल्कुल पहुचाएंगे सिर
हम तो वहीँ तीन दिन रुके न हॉस्पिटल में सिर तो बिचारे बहुत लोग आएं सारी सुविधाएं उनको बताई कार्ड होगा तो फ्री में हो जाएगा
चलिए राजेश जी आप अपने आप को स्वस्थ रखिए थोड़ी शरीर की चिंता करिये बच्चों की चिंता कीजिये और बहुत प्रगति कीजिये मेरी बहुत शुभकामनाएं है आपको
साथियो हमने राजेश जी की बातें सुनी आइये अब हमारे साथ सुख देवी जी जुड़ रही हैं घुटनों की समस्या ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था आइये हम सुखदेवी जी से पहले उनके दुःख कि बात सुनते हैं और फिर सुख कैसे आया वो समझते हैं
सुखदेवी जी नमस्ते आप कहाँ से बोल रहीं हैं
दानदपरा से
मोदी जी कहाँकहाँ पड़ता है ये
मथुरा में फिर तो सुखदेवी जी आपको नमस्ते भी कहना है और साथसाथ राधेराधे भी कहना होगा
हाँ राधेराधे
अच्छा हमें सुना कि आपको तकलीफ हुई थी
आपका कोई आपरेशन हुआ
जरा बताएंगी कि क्या बात है
हाँ मेरा घुटना खराब हो गया था तो आपरेशन हुआ है मेरा
प्रयाग हॉस्पिटल में
आपकी आयु कितनी है सुखदेवी जी
उम्र 40 साल
40 साल और सुखदेव नाम और सुखदेवी को बीमारी हो गई
बीमारी तो मुझे 1516 साल से ही लग गई
अरे बाप रे इतनी छोटी आयु में घुटने आपके
खराब हो गए
वो गठिया बाय बोलते हैं जो जोड़ों में दर्द से घुटना खराब हो गई
तो 16 साल से 40 साल की उम्र तक आपने इसका
इलाज ही नहीं कराया
नहीं करवाया था
दर्द की दवाई खाते रहे छोटेमोटे डॉक्टरों ने तो ऐसे देशी दवाई है वैसी दवाई है
थैलाछाप डॉक्टरों ने तो ऐसे उनसे घुटना चल भी पाई ख़राब हो गई 12 किलोमीटर पैदल चली मैं तो घुटना खराब हो गई मेरी
तो सुखदेवी जी आपरेशन का विचार कैसे आया उसके पैसों का क्या प्रबंधन किया कैसे बना ये सब
मैंने वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया है
तो आपको आयुष्मान कार्ड मिल गया था
और आयुष्मान कार्ड से गरीबों को मुफ्त में उपचार
स्कूल में मीटिंग हो रही थी
वहाँ से हमारे पति को पता चला तो कार्ड बनवाया मेरे नाम से
फिर इलाज करवाया कार्ड से और मैंने कोई पैसा नहीं लगाया
कार्ड से ही इलाज हुआ है मेरा
खूब बढ़िया इलाज हुआ है
अच्छा डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड न होता तो कितना खर्चा बताते थे
ढाई लाख रुपए तीन लाख रुपए
67 साल से पड़ी
हूँ खाट में
ये कहती थी कि हे भगवान मुझे ले ले तू मुझे नहीं जीना
7 साल से खाट पे थी
बापरेबाप
बिल्कुल उठाबैठा नहीं जाता
तो अभी आपका घुटना पहले से अच्छा हुआ है
मैं खूब घूमती हूँ
किचेन का काम
घर का काम करती हूँ
बच्चों को खाना बनाकर देती हूँ
तो मतलब आयुष्मान भारत का कार्ड आपको सचमुच में आयुष्मान बना दिया
बहुत धन्यवाद आपकी योजना की वजह से ठीक हो गई अपने पैरों पर खड़ी हो गई
तो अब तो बच्चों को भी आनंद आता होगा
बच्चों को तो बहुत ही परेशानी होती थी
अब माँ परेशान है तो बच्चा भी परेशान है
देखिये हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्थ्य ही होता है ये सुखी जीवन सबको मिले यही आयुष्मान भारत की भावना है चलिए सुखदेवी जी मेरी आप को बहुत बहुत शुभकामनाएँ फिर से एक बार आप को राधेराधे
राधे राधे नमस्ते
मेरे प्यारे देशवासियो युवाओं से समृद्ध हर देश में तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं
अब वही तो कभीकभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है
पहली चीज है आईडीईएएस और Innovation
दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डीओ स्पिरिट यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद्द चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हों जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं
चमत्कार हो जाते हैं
आज कल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप
सही बात है ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है
सालदरसाल स्टार्टअप को रेकॉर्ड निवेश मिल रहा है
ये क्षेत्र बहुत तेज रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है
यहाँ तक कि देश के छोटेछोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुँच बढ़ी है
आज कल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है
आप सबने इसके बारे में सुना होगा
यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम 1 बिलियन डॉलर होता है यानी करीबकरीब सात हज़ार करोड़ रूपए से ज्यादा
साथियो साल 2015 तक देश में बमुश्किल नौ या दस यूनिकॉर्न्स हुआ करते थे
आपको ये जानकार बेहद ख़ुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है
एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है
सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है
ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है
आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं
यानि 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं
साथियो स्टार्टअप की सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है
शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था
साथियो स्टार्टअप्स के जरिये भारतीय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं
आज हम एक युवा मयूर पाटिल से बात करेंगे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉल्यूशन की प्रोब्लेम का सोल्यूशन देने का प्रयास किया है
मयूर जी नमस्ते
नमस्ते सर जी
मयूर जी आप कैसे हैं
बस बढ़िया सर
मैं बहुत प्रसन्न हूँ
अच्छा मुझे बताइए कि आज
आप कुछ स्टार्टअप की दुनिया में हैं
और वास्ते में से बेस्ट भी कर रहें हैं
एनवायर्नमेंट का भी कर रहे हैं थोड़ा मुझे अपने बारे में बताइए
अपने काम के बारे में बताइए और इस काम के पीछे आपको विचार कहाँ से आया
सर जब कॉलेज में था तभी मेरे पास मोटरसाइकिल था
जिसका माइलेज बहुत कम था और एमिशन बहुत ज्यादा था
वो त्वो स्ट्रोक मोटरसाइकिल था
तो एमिशन कम करने के लिए और उसका माइलेज थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश चालू किया था
कुछ 201112 में और इसका मैंने करीबकरीब 62 किलोमीटर पेर लित्रे तक माइलेज बढ़ा दिया था
तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाए जो मार्स प्रोडक्शन कर सकते हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फायदा होगा तो 201718 में हम लोगों ने उसका टेक्नोलॉजी डेवलप किया और रिजनल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में हम लोगों ने 10 बसों में वो उसे किया
उसका रिजल्ट चेक करने के लिए और करीबकरीब हम लोगों ने उसका चालीस प्रतिशत एमिशन उसका कम कर दिया
हम्म अब ये टेक्नोलॉजी जो आपने खोजी
उसका पेटेंट वगैरह करवा लिया
हाँ जी पेटेंट हो गया
ये साल में हमें पेटेंट
ग्रांट होकर के आ गया
और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्लान है आपका
किस प्रकार से कर रहें हैं जैसे बस का रिजल्ट आ गया
उसकी भी सारी चीज़ें बाहर आ गई होंगी
तो आगे क्या सोच रहे हैं
सर स्टार्टअप इंडिया के अन्दर नीति आयोग से अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वहाँ से हमें ग्रांट मिला और वो ग्रांट के बेसिस पे हम लोगों ने अभी फैक्ट्री चालू किया जहाँ पे हम एयर फिल्टर्स का मैन्यूफैक्चरिंग कर सकते हैं
तो भारत सरकार की तरफ से कितना ग्रांट मिला आपको
और उससे आपका काम चल गया
हाँ अभी तो चालू हो गया है
प्रोसेस में हैं
आप कितने दोस्त मिल करके कर रहें हैं ये सब
हम लोग चार लोग हैं सर
और चारों पहले साथ में ही पढ़ते थे और उसी में से आपको एक विचार आया आगे बढ़ने का
हाँ जी हाँ जी हम कॉलेज में ही थे
और कॉलेज में हम लोगों ने ये सब सोचा और ये मेरा आईडीईए था कि मैं मेरा मोटरसाइकिल का एटी लीस्ट पॉल्यूशन कम हो जाए और माइलेज बढ़ जाए
अच्छा पॉल्यूशन कम करते हैं माइलेज बढ़ाते हैं तो एवरेज खर्च कितना बचता होगा
सर मोटरसाइकिल पे हम लोगों ने टेस्ट किया उसका माइलेज था 25 किलोमीटरों पेर लिटर वो हम लोगों ने बढ़ा दिया 39 किलोमीटरों पेर लिटर तो करीबकरीब 14 किलोमीटर का फायदा हुआ और उसमें से 40 प्रतिशत का कार्बन इमिशंस कम हो गया
और जब बसों पे किया रिजनल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ने तो वहाँ पे 10 प्रतिशत फ्यूएल एफिशिएंसी इनक्रीज हुआ और उसमें भी 3540 परसेंट एमिशन कम हो गया
मयूर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके साथियों को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिये कि कॉलेज लाइफ में खुद की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी आपने खोजा और अब उस समाधान में से जो रास्ता चुना उसने पर्यावरण की समस्या को एड्रेस करने के लिए आपने बीड़ा उठाया
और ये हमारे देश के युवाओं का ये सामर्थ्य ही है कि कोई भी बड़ी चुनौती उठा लेते हैं और रास्ते खोज रहें हैं
मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं
बहुत बहुत धन्यवाद
थांक यू सिर थांक यू
साथियो कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था कि वो बिजनेस करना चाहता है या एक कोई नई कंपनी शुरू करना चाहता है तब परिवार के बड़ेबुजुर्ग का जवाब होता था कि तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते नौकरी करो ना भाई
अरे नौकरी में सिक्यूरिटी होती है सैलरी होती है
झंझट भी कम होती है
लेकिन आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं
साथियो भारत की ग्राउथ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है जहाँ अब लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं
इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मज़बूत बनेगी
मेरे प्यारे देशवासियो आज मन की बात में हमने अमृत महोत्सव की बात की
अमृतकाल में कैसे हमारे देशवासी नएनए संकल्पों को पूरा कर रहे हैं इसकी चर्चा की और साथ ही दिसम्बर महीने में सेना के शौर्य से जुड़े हुए अवसरों का भी जिक्र किया
दिसम्बर महीने में ही एक और बड़ा दिन हमारे सामने आता है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं
ये दिन है 6 दिसम्बर को बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि
बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिये अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्पित किया था
हम देशवासी ये कभी न भूलें कि हमारे संविधान की भी मूल भावना हमारा संविधान हम सभी देशवासियो से अपनेअपने कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है तो आइये हम भी संकल्प लें कि अमृत महोत्सव में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे
यही बाबा साहब के लिये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी
साथियो अब हम दिसम्बर महीने में प्रवेश कर रहे हैं स्वाभाविक है अगली मन की बात 2021 की इस वर्ष की आखिरी मन की बात होगी
2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और मैं हाँ आपसे ढ़ेर सारे सुझावों की अपेक्षा करता ही रहता हूँ करता रहूँगा
आप इस साल को कैसे विदा कर रहे हैं नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं ये भी जरुर बताइये और हाँ ये कभी मत भूलना कोरोना अभी गया नहीं है
सावधानी बरतना हम सब की जिम्मेवारी है
बहुतबहुत धन्यवाद